और समंदर के पानी में एक जाहज भी है और ये समंदर दिखने में बहुत ही बड़ियाँ है और बहुत बड़ा भी है।

काले रंग की है बहुत ही बड़ियाँ लग रही है बहुत ही बेहतरीन लग रही है।

और होटल के जो शामने है सामने बहोत लोग है।

टिंग से बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट भी की गयी है बहुत ही बड़िया लग रही है।

तालाब एकदम छोटा है पर बहुत ही बड़ियाँ लग रही है दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं।

ऐ दो तीन जानवर की मूर्ति भी है और दो तरीके के मूर्ति भी यहाँ बनाया गया है।

और बुक का जो कलर है वो इकदम से डिफरेंट है यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा हुआ है उनके हाथ में एक बुक है।

और बड़े बड़े कुछ पेड़ भी है जिस के वजह से ये जगह और अच्छी लग रही है।